और यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है और इसमें दो छोटा-छोटा तल्ला लगा हुआ है।

यहाँ पे और इसमें ब्लू कलर का अंदर में कुछ दिख रहा है।

और एक सर है जो खड़े है वाइट और ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए भी दिखाई --